यह तस्वीर एक क्लिनिक की है जहाँ पर --

सामने एक अलमारी है बड़ी सी |

उनके कपड़े नीले रंग के हैं |

मेले की लग रही है जहाँ पर झूला लगा हुआ है ।

कुर्सी रखी हुई हैं ।

लाल और सफ़ेद रंग का है | नीचे हरी-हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं |

और आसमान एकदम साफ दिख रहा है |

दो आदमी खड़े हुए हैं लाइट जल रही है |

जोकि सफ़ेद --

यह तस्वीर एक बैंक की है जहाँ पर --

जहाँ पर नेट लगी हुई है तीन जगह |

यह तस्वीर किसी शादी --